उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं उनका बैकग्राउंड --

पेड़ों का रंग हरा है कुछ पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं।

यह पिक्चर किसी के बर्थडे पार्टी की है।

यह किसी पार्क की पिक्चर है इसमें हरे रंग के पेड़ पौधे --

एक नाव भी दिखाई दे रही है समुंदर के साथ में।

कुछ का रंग ग्रीन है | कुछ का डार्क ग्रीन है पार्क के बीचो बीच एक सड़क भी दिखाई दे रही है ।

फर्स्ट बच्चे ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

येलो ब्लैक हैऔर कुछ बच्चों के कपड़े नजर आ रहे हैं एक ऐ.सी. नजर आ रहा है।

यह पिक्चर किसी हॉस्पिटल की है जिसका नाम आदर्श हॉस्पिटल --

तेल रिफाइंड मैगी सब दिखाई दे रहा है।

ये है पिक्चर किसी इमारत की है | इमारत का रंग --

चार्ट से कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं | सबके पास चार्ट हैं ।

बहुत ही मजबूत दीवार बनी हुई है।

यह पिक्चर किसी ऑफिस सम्बेलन की है इसमें --

इस पिक्चर में हमें डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है।